एक दम साफ सुथरी दिख रही है। वातावरण काफी सुन्दर दिख रहा है।

और काफी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ त्योहार मनाने के लिए।

इस पिक्चर में पेट्रोल पंप दिख रहा रहा है जिसमे की --